इस तस्वीर में मुझे कुछ स्ट्रीट लाइट दिखाई दे रही हैं।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

इस तस्वीर मे मुझे एक रोड दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में मुझे ऑफिस ऑफ द डेवलप ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर दिखाई दे रहा है।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

इस तस्वीर में मुझे बहोत सारी महिलाएं दिखाई दे रही हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक खिड़की दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में मुझे दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक रेल्वे लाइन दिखाई दे रही है।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

इस तस्वीर में मुझे एक बाउंड्री दिखाई दे--

इस तस्वीर में मुझे कुछ पत्थर दिखाई दे--

इस तस्वीर में मुझे प्रिज्म चैंपियन प्लस का बोर्ड दिखाई दे रहा है।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

इस तस्वीर में मुझे एक खेत दिखाई दे रहा है।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

इस तस्वीर में मुझे कुछ शीशे दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में मुझे कुछ चेयर दिखाई दे रही--